ये ब्लू सिंग टोन मेकअप एंड ब्यूटी सैलून हैं। ये महिलाओ के लिए विशेष रूप से बनाया गया हैं। यहाँ पे महिलाओ को शादी विवाह के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता हैं।

और इसके बगल में एक अपाची गाड़ी लगे हैं और इन बुक्स का दुकान का नाम वेदान्ता बुक बुक्स वल्ड और ये भाई अपनी कमर पे हाथ लिए हुए खड़ा होके मुस्कुरा रहा हैं।